---पे अच्छा डिजाइन बना हुआ हैं यहां पे और पाइप लगा हुआ हैं बहुत सारे लोग खड़े है और झालर से यहां रेड कलर और व्हाइट कलर से यहां पे पायल जैसा डिजाइन बना हुआ हैं।

सजावट की गई है ऊपर और यहां पे जालियों से कुछ लगा हुआ है और यहां बहुत लंबी-लंबी अलग ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है लकड़ियों की रेलिंग लगी है यहां पे बहुत सारे लोग गाना गा रहे है।

लोहे का कुछ सामान भी रखा हुआ है और यहां पे लोहे के कुछ एंगल भी गड़े हुए है सामने और यह--